दुकान के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर कपड़ों के दुकान के ऊपर प्रिया लिखा हुआ है।

दुकान का नाम वी_आई_पी जोन लिखा हुआ दिख रहा है।

यह सफेद कलर के कपड़े में ढके हुए हैं।

दो लड़कियां और तीन लड़के दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक दुकान नजर आ रही है।

एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।